यहां पर एक लाल बुलेट खड़ी है।

बह रहा है और कुछ पत्तियां सुंदर दिखाई दे रही हैं।

बीच में नदी दिख रही--

जिसमें बदल भी दिख रहे हैं।

ये एक ट्रक दिखाई दे र--

अंकल दिख रहे हैं जो घांस के साथ में खड़े हुए हैं या--

लक्स यहां है एक चल नी बहोत ही सा अच्छा--